साथ में ही वुडेन का काम हुआ है।

जिन्होंने तरह-तरह के कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने पिंक कलर की जैकेट पहनी है।

और उसके साथ में एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

इसमें अलग-अलग तरह के कट भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक शॉप दिखाई दे रही हैजहां पर बहुत सारा सामान पड़ा है।

यहां पर एक लड़का और लड़की दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर अह कुछ तरह के जानवर भी दिखाई दे रहे हैं।

और ये शायद मर चुकी हैं और कई लोग इन्हें काट के साइड में भी रख रहे हैं।

और यहां पर मुझे कई औरतें और कई मर्द दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर तीन चेयर्स रखी हुई हैं जो कि सिल्वर कलर की है।

और इसमें एक को मैरून कलर का दरवाजा लगा है।

अरे ये तो कृष्ण जी की मूर्ति है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगती है।

ये कोई पहाड़ी ढाबा लग रहा है जिसमें लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट लंच डिनर और स्नैक्स ।

और इसके बाहर भी कई लोग बैठे हुए हैं।

ये एक शॉपिंग मॉल लग रहा है जिसमें चार बिल्डिंग्स हैं।

ये एक जंगल सा दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे पेड़ हैं।

यहाँ पर कोई पूजा की सामग्रियां पड़ी हुई हैं।

और यहां पर मुझे केले के पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें ब्राउन कलर का दरवाजा भी लगा हुआ है।

जिसमें कुछ तेल बिस्किट और--

ये मुझे लग रहा है कहीं स्कूल में कुछ --

और एक मुझे लाल रंग की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

और वाइट कलर की बिल्डिंग है।

और ये चौमिन --

साथ में मुझे लाल रंग की एक--

फोग एंड चम्मच भी दिखाई दे रहा है।

और साथ में बाहर वाइट और रेड --

की कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्राउन कलर के हैं।

ये एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां एक्सरसाइज कर रहे हैं।

हैं और ये कुछ हार्ट शेप में बने हुए हैं।

और ये है क्या ये मुझे पता नहीं चल रहा है।

और इन्होंने तरह तरह की रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं।

और इसके ऊपर दो टंकियां पानी की टंकियां भी हैं।

और साथ में ही कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई है।